दीवार पर बोर्ड लगा है। और उउ उम जिसमे उम --

सामने एक उम बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है जिसमें लाल अअ कलर पुता हुआ के ऊपर अ बोर्ड लगा है जिस पर कुछ लिखा है।

अं-स् जो सोफे उम-उम की कुर्सी रखी हैं और एक नीली दीवाल देखाई दे रही है।

सामने एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें सफेद टाइल्स लगी है।

यह सामने दुकान दिखाई दे रही है उम जिसमें बोहोत सारी उम रेके बनी हुई हैं। रेक में बोहोत सारा सामान रखा है उम और ट्यूबलाइट लगे हुए हैं।

सामने एक हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारी रैक भरी हुई है। रैको में बहोत सारा सामान रखा है कुछ पैकेट --

सामने एक बड़ी दुकान दिखाई दे रही है जिसमें बोहोत सारी रैक बनी है | रैकों में बोहोत सारी उम किताबें रखी हुई हैं ।

और दिखाई दे रही है और ग्रांउड मे दो बड़ी-बड़ी टंकी न्रखी हुई है। पाएप डले हैं और रेता रखी है। ईटे रखीं हैं और कुछ --